एक बड़ा सा गेट लगा है ।

जिसके पैरों में चोट है जिस पे ट्रीटमेन्ट किया गया है।

''एक चेयर है उस पे एक मैम बैठी हुई है जो --''

अपने हाथों की एक्सरसाइज कर रहा है और एक उसके पास खड़ा हुआ है।

और डेयरी मिल्क टॉफी दिखाई दे रही है ।

इस इमेज में एक हॉल दिखया गया है जिसमें लाइट्स लगी है डेकोरेशन --

जिस पर इसमें एक --

वाटर स्लाइड दिखाई दे रही जो कि उनके लिए गेम्स में --

कार्टून्स बनाये गए हैं जिसमे ग्रीन कलर है |

सफेद ऊपर नारंगी कलर दिखाई दे रहा है बीच --

इस इमेज में डेकोरेट किया हुआ एक मंदिर दिखाई दे रहा है ।

सैम कॉस्टयूम पहने हुए दिखाई दे रहे है।

पेड़ और नदी दिखाई दे रही है।

बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

आस-पास खिड़कियाँ हैं लाइट्स हैं --

बहुत ही सुन्दर गेट लगा है ।

इमेज में बदल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मानसरोवर स्टेशनरी --